ये एक बस है इलेक्ट्रिक बस बी.एस.आर.टी.सी. बिहार की और बस में एक अंकल चढ़ रहें हैं और एक अंकल यहाँ पे पर खड़े हुए हैं बस के पास बैठ रहें हैं।

एक ही कलर की ड्रेस पहन कर एक नाव में पिंक कलर की ड्रेस पहनकर बैठे हैं कुछ लोग एक ने स्काई ब्लू कलर की और सब लोग उनकी रेस देख रहें हैं।

यह एक शॉप दूध सम्राट है यहाँ पर दूध दही सब मिलता है।

एक व्हाइट कलर का पिलर भी दिख रहा है।

ये बंधन बैंक है और बैंक के पास में कुछ दुकानें है चाय हाउस और उसके पास में भी कुछ दुकानें है बाहर कुछ काम चल रहा है।

यह एक ढाबा कैफे है और यहाँ पर बहोत सारा डैकोरेशन हुआ है बहोत बड़ी बिल्डिंग है।

ये एक बस स्टैन्ड है यहा पे बहुत सारी बसे खड़ी हुई है।

ये एक बस है जिस पर लिखा है बिहार शरीफ।

पेन्ट की दुकान है जहाँ पर पेन्ट मिलता है के_के मोटर इनोवेशन |

ये एक रोड है यहा पे एक जीप खड़ी हुवी है जीप के पास एक अंकल खड़े है।

यहां बाउंड्री पे कुछ कपड़े टंगे हुए हैं।

बाहर रोड पे एक कार खड़ी हुई है ब्लैक कलर की और एक अंकल बाइक से आ रहे हैं होटल के पास से।